जावा में लॉजिकल आपरेटर्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप लॉजिकल आपरेटर्स के बारे में सीखेंगे लॉजिकल आपरेटर्स का प्रयोग करके मल्टीपल एक्सप्रेशंस और कोष्ठकों का उपयोग करके प्रेसिडन्स को ओवरराइड कैसे करें160
इस ट्यूटोरियल के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं उबुंटू 1110 जेडीके 16 और इक्लिप्स 37 इस ट्यूटोरियल के लिए आपको जावा में रिलेशनल आपरेटर्स का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी दिखाई वेबसाईट पर जाएँ
लॉजिकल आपरेटर्स का उपयोग मल्टीपल कंडीशन की जांच करने के लिए किया जाता है
यहाँ जावा में उपलब्ध लॉजिकल आपरेटर्स की एक सूची है
एंड ओर नोट
हम प्रत्येक का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे
इक्लिप्स पर जाएँ
यहाँ हमारे पास शेष कोड के लिए आवश्यक इक्लिप्स इडे और स्केलेटन है
हमने लॉजिकलोपरेटर्स नामक एक क्लास बनाया और इसे मेन मेथड में शामिल कर दिया है
अब कुछ वैरिएबल बनाते हैं
बूलियन ब हम कंडीशन्स के परिणाम को ब में संग्रह करेंगे इंट अगे इस इक्वल टो 11 इंट वेट इस इक्वल टो 42 हमारे पास एक व्यक्ति की ऐज और वेट है
हम जांच करेंगे कि क्या व्यक्ति की ऐज 18 वर्ष से कम है और वेट न्यूनतम 40 केजी है
अब देखें कि यह कैसे करें
ब इस इक्वल टो अगे लेस थान 18 एम्परसैंड एम्परसैंड वेट ग्रेटर थान इक्वल टो 40 इस स्टेटमेंट में दो एक्सप्रेशन्स हैं और दोनों के बीच दो एम्परसेंड के चिन्ह हैं
यह जाँचता है कि क्या ऐज 18 से कम है और वेट 40 या उससे अधिक है
इस ऑपरेशन को एंड ऑपरेशन कहते हैं
अब वैल्यू ब को प्रिंट करते हैं
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट ट्रू है क्योंकि दोनों ही कंडीशन्स संतुष्ट हुई हैं
अब वेट को बदलें ताकि एक कंडीशन संतुष्ट न हो और कोड को पुनःरन करें
42 को बदलकर 32 करें
सेव और रन करें
अब आउटपुट फॉल्स आता है
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐज 18 से कम होने की कंडीशन संतुष्ट हुई है
किन्तु वेट के 40 के बराबर या उससे अधिक होने की कंडीशन संतुष्ट नहीं हुई है
एंड ऑपरेशन के लिए परिणाम के ट्रू होने के लिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना आवश्यक है
इसलिए हमें हमारे आउटपुट के रूप में फॉल्स प्राप्त होता है
इस तरह दोहरे एम्परसेंड चिन्ह का प्रयोग करके हम एंड ऑपरेशन को क्रियान्वित कर सकते हैं
माना कि हमें ऐज और वेट ज्ञात हैं और यह पर्याप्त है यदि केवल एक कंडीशन संतुष्ट हो जाये
दूसरे शब्दों में हमें यह देखना ज़रूरी है कि क्या पहली कंडीशन ट्रू है या दूसरी
यह ओर ऑपरेशन का उपयोग करके किया है
सबसे पहले पहली कंडीशन को हटायें
और टाइप करें अगे लेस थान इक्वल टो 15 पाइप पाइप वेट लेस थान इक्वल टो 30 यहाँ दो कंडीशंस हैं और उनके बीच डबल पाइप चिन्ह है
यह स्टेटमेंट जाँचता है कि क्या दी गई दो कंडीशन्स में से कम से कम एक संतुष्ट होती है
आउटपुट देखने के लिए कोड रन करें
सेव और रन करें
हम देखते हैं कि आउटपुट ट्रू है
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ओर ऑपरेशन के लिए एंड ऑपरेशन की तरह दोनों कंडीशन्स का ट्रू होना आवश्यक नहीं है
इसके लिए न्यूनतम एक कंडीशन का ट्रू होना आवश्यक है
अतः वेट की कंडीशन संतुष्ट नहीं हुई हैपर ऐज की कंडीशन संतुष्ट हुई है
हमें आउटपुट में ट्रू प्राप्त होता है
अब आयु को इस तरह से बदलें कि दोनों कंडीशंस फॉल्स हों और परिणाम देखें
11 को बदलकर 17 करें
सेव और रन करें
अब आउटपुट फॉल्स आता है क्योंकि दोनों ही कंडीशंस संतुष्ट नहीं हुई हैं
इस तरह हम एक ओर ऑपरेशन को क्रियान्वित करने के लिए डबल पाइप चिन्ह का प्रयोग करते हैं
अब हमें उन लोगों के लिए जाँचना है जो 15 से अधिक ऐज के हैं और उनका वेट 30 किग्रा से अधिक है
दूसरे शब्दों में हमें इस कंडीशन के बिल्कुल विपरीत जाँचने की आवश्यकता है जैसा हमने किया था
ऐसी स्थिति में हम नोट ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं
सर्वप्रथम कंडीशन को कोष्ठकों में बंद करते हैं
और कंडीशन से पहले एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं
एक एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करके हम कोष्ठकों के अन्दर कंडीशंस के बिल्कुल विपरीत होने की जांच करते हैं
चूँकि पिछला आउटपुट फॉल्स था इसे ट्रू होना चाहिए
अब देखते हैं
सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं कि आउटपुट पिछले के बिलकुल विपरीत है
इस तरह एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करके हम नोट ऑपरेशन को क्रियान्वित करते हैं
अब मान लेते हैं कि हमें 15 से कम ऐज वाले लोग चाहिए
या 18 से कम ऐज वाले और 40 किग्रा से कम वेट वाले लोग
अब देखें कि इस कंडीशन को हम किस प्रकार कार्यान्वित करते हैं160
पिछली कंडीशन को हटायें और टाइप करें ऐज15 से कम या ऐज 18 से कम और वेट 40से कम जैसा कि हम देख सकते हैं कि कंडीशन स्वयं ही अस्पष्ट है
इसके अतिरिक्त हम नहीं जानते हैं कि पहले ओर ऑपरेशन को क्रियान्वित किया जाएगा या एंड ऑपरेशन को
यह ऑपरेटर्स की प्रेसिडन्स पर निर्भर करता है
ऐसी स्थिति में हम प्रेसिडन्स को ओवरराईट करने और कंडीशन को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं
अतः कोष्ठकों को शामिल करते हैं

कोड को रन करते हैं सेव करें रन करें
अब हालांकि पहली कंडीशन जो कि ऐज 15 से कम की है संतुष्ट नहीं होती है
दूसरी कंडीशन जो कि ऐज 18 से कम और वेट 40 से कम की है संतुष्ट हुई है
अतः आउटपुट ट्रू है
एक नियम के अनुसार अस्पष्टता से बचने और व्यंजकों को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग करें
और इस तरह हम मल्टीपल कंडीशन्स के लिए जांच करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटरों का प्रयोग करते हैं
इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गये हैं
हमने सीखा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में और लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रयोग करके मल्टीपल एक्सप्रेशन्स को कैसे जाँचें160
कोष्ठकों का प्रयोग करके प्रेसिडन्स को कैसे ओवरराइड करते हैं
एक नियत कार्य के रूप में ज्ञात कीजिए कि क्या दिखाए गए दो व्यंजक समतुल्य हैं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
यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलती हैऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken tutorialorgnmeict इंट्रो पर उपलब्ध है मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
धन्यवाद